पीछे बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है।

ऐ एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जिस पर एक इंडिगो का प्लेन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसपर कुछ घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है।